यह एक कार है जो सुजुकी मारुति कंपनी का है और यह ब्लैक कलर का है और यह प्लेट नंबर इसका पीला है और नंबर प्लेट इसका है के. जे. एच. टेन. एट .टी .सेवन सेवन थ्री सिक्स ।

यह एक मेला लगा हुआ है इसमें ब्रेक डांस जंपिंग और उधर बच्चा का बैठने का कोई अति भी है उधर रेलगाड़ी भी यहां पर बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं और बैठने के लिए जा भी रहें है ये।